सामने तिरंगा झंडा लगा हुआ है उसके अगल- बगल दो आदमी खड़े हैं।

एक लम्बी सरक भी दिखाई पड़ रही है।

दूसरे सड़ सड़क के किनारे साइकल पर कुछ लड़के बैठे हुए है।

हैंगर में बहुत सारे पुतले में कपड़े पहने हुए हैं।

चित्र में यह किसी दुकान का चित्र नजर आ रहा है इसका नाम श्री स्टाइल है।

लाल तथा हल्का गुलाबी तथा उजाले कलर का पंडाल है बीच बीच में फूले लगी हुई हैं।

और उस चेयर पे बहुत सारे आदमी तथा औरत बैठकर खाना खा रहे हैं ऊपर झूमर तथा लाइट्स लगी हुई है।

दूर में कुछ आदमी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

इसके सामने हैंगर में लड़कियों के टॉप भी रखे हुए हैं।

चित्र में एक दुकान का चित्र दिखाया गया है जिसका नाम विशाखा डेयरी पार्लर है।

उसके उधर बहोत बड़ा पहार है।

इस चित्र में एक वाइट कलर का रूम दिखाई पड़ रहा है और एक येलो कलर का।

सामने एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है और बहोत बड़े बड़े पेड़ है छोटी छोटी घासे भी है।

दुकान के दूसरी तरफ कुछ शटर व कुछ गेट भी हैं।

इस चित्र में एक बहोत लंबी सड़क दिखाई पड़ रही है जिसके किनारे एक बहोत बड़ा पेड़ है।

सामने टी_वी लगी हुई है।

इसके सामने ऐ_सी लगा हुआ है।

इस तरफ भी एक आदमी बाइक पे बैठा हुआ है।

काले कलर की कुर्सी पर बैठा हुआ है।

दुकान के बाहर दो तीन लकड़ी की कुर्सियां रखी गई हैं।

साइड में एक व्हाइट कलर का फैन भी लगा हुआ है।

सामने कुछ बेड जैसा बिछा हुआ है।

सामने बोर्ड में किलर नाइक एच_एम स्पाईकर लिखा हुआ है।

पीछे हैंगर में बहुत सारे टी शर्ट टंगे हुए हैं।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बालूघाट एयरपोर्ट जो की ब्लू कलर का है उसके नीचे एक गेट भी लगा हुआ है।

एक आदमी खड़ा है बा अंदर लैपटॉप में बहोत सारे आदमी कम कर रहे हैं।